ये पेट्रोल पंप है अ एक बड़ी लाइट लगी हुई है पेट्रोल पंप के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं पेट्रोल भरने वाले हैं।

यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान बना है बच्चे है बच्चे खेल रहे है कुछ योगा कर रहे है कुछ टहल रहे है सुबह का वक्त हो रहा है आसपास पेड़ लगे हुए है।

ये बस स्टैन्ड का इमेज है| यहाँ पर बहोत बड़ी बस खड़ी हुई हैं व्हाइट कलर की ऑटो खड़ा हुआ है एक बस और खड़ी हुई है।